उपर रेड कलर का बैनर मे भी कुछ लिखा हुआ है।

इसका आगे में दो पोस्टर लगा हुआ है साइड में एक लड़की खड़ा हुआ है पीछे नदी है।

नीचे बहुत सारा बाल गिरा हुआ है।

इस तस्वीर पर एक लकड़ी का सोफा दिख रहा है।

राइट साइड में गैरेज है उसका सामने में एक बड़ा सा गच्ची है।

और इसका पीछे बहुत ज्यादा जंगल है।

नीचे एक छोटा सा घर है जिसका साइड में एक प्यारा सा गच्छी है।

खिड़की से धूप का रौशनी आ रहा है और फ्लोर में नीचे साइड में ऑरेंज कलर का कुछ है।

आदमी लोग येलो और ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के है।

साइड में जंगल और बड़ा बड़ा गच्छी लोग है।

ये फोटो एक ए_टी_एम का है।

यहां एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का सिंटेक्स और ब्लू कलर का दो सिंटेक्स है।

बस ग्रीन व्हाइट येलो कलर में है।

ये फोटो एक रिसोर्ट का है। जहां चार टेंट लगा के जो ग्रे कलर में है।

दुकान का अंदर बहुत ज्यादा सामान है।

ये फोटो एक दुकान का है दुकान का आगे में चार चेयर है।

दुकान ब्लू ग्रीन और ऑरेंज कलर का है।

हाँ एक लड़का सफेद शर्ट और ब्लैक पेंट में है।

लड़का का अपना माथा में टोकरी रखा है जिसमें बहुत सारा सामान है और छठ पूजा के लिए जा रहे है।

दुकान का आगे में और एक स्टूल है।

कुछ साधू पीछे बाड़ के पास काम कर रहे है।

पीछे झोपर्या पत्ते से बनी दिख रही है।

गेट को दो ईटा से सपोर्ट करके है।

लड़का ने व्हाइट कलर का कुर्ता लगाया है और लड़की ने रेड कलर का साड़ी पहने।

सीढ़ी से एक पंडित जा रहा है।

यहां बहुत ज्यादा आदमी है।